उसको किसी चीज पर रखा गया है साथ में एक व्यक्ती दिखाई दे रहा है कुर्सी पे बैठा हुआ उसके साथ--

एक इंसान का हाथ दिखाई दे रहा है साथ में एक फल दिखाई दे रहा है।

बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं पारक के साथ एक--

प्लेन कच्ची सड़क छोटी सी दिखाई दे रही--